यहाँ पर एक बजाज की शोरूम है जिसमें कई गाड़ियाँ रखी हुई है गाडियाँ बाइक है ।

जो वहाँ व्यक्ति चश्मा लगाए हुए फोटो क्लिक कर रहा है ।

जिसमें अ ज की बोर्ड लगी है | जिसमें ए अ शीशे की दरवाजे लगी हुई है | लोहे की गेट लगी हुई है।

और ऐ म लोग कई व्यक्ति यह वहाँ आने-जाने की जगह बनी हुई है ।

यहाँ म माहौल पूरा शांत लग रहा है वह वहाँ बड़ी-बड़ी इमारते बनी हुई है ।

यह एक उम्म कार्यलय प्रतीत होता है जिसके बाहर उम्म बहुत बड़ी-बड़ी इमारते बनी हुई है।

जिसमे एल.एस लिखा हुआ है कई व्यक्ति आना जान कर रहा है और वहाँ एक गाड़ी भी खड़ी है ।

यह एक पर्यटक स्थल है जिसमें एक महिला और एक पुरुष दोनों पहाड़ों के चट्टानों के बीचों-बीच खड़े हैं महिला बैठी हुई है।

चाय या कॉफी कुछ भी अ सामने एक बाल्टी रखी हुई है।

बच्चियाँ नृत्य की नायेत अ मन नृत्य की प प अ पोशाक पहनी हुई है।

यह एक मंडी प्रतीत होता है जिसमे लोग मांश की बिक्री म म मांश मछली मांश मछली की बिक्री कर रहे हैं।

जो बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है ।